इस फोटो में मुझे पानी का झरना दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे लोहे का गेट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे आइसक्रीम का ठेला दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे पॉट्स दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ घर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा टेबल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे फूल दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे फूलों का बुके दिखाई दे रहा है।